और थोड़ी घास भी दिख रही है नदी के उस पार घने पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

जिसे कंस्ट्रक्शन साइट कहते हैं दो आदमी काम करते हुए दिख रहे हैं।

जिसमें रोड के उस बगल एक गैरेज दिख रहा है।

इसमें मुझे बच्चों के खेलने के लिए स्लाइडिंग झूला दिख रहा है।

एक टंगा हुआ लाइट दिख रहा हैं और दरवाजा दिख रहा हैं।

इसमें पहाड़ के अंदर एक मंदिल दिख रहा है मंदिल का दरवाजा दिख रहा है।

और मंदिल के ऊपर ऑरेंज कलर का सिंदूर लगा हुआ दिख रहा है।

आगे छोटे छोटे पौधे दिख रहे हैं एक ग्रीन कलर की भी लाइट दिख रही है।

जिसमें मुझे घांस भी दिख रहा है और मिट्टी भी दिख रही है। मिट्टी गीली है।

सोफे के बगल में एक स्कूटी भी रखी है जो ब्लैक कलर की है।

इस इमेज में एक स्टेज दिख रहा है जिसमें सीढ़ी दिख रही है।

शॉप के अंदर एक आदमी दिख रहा है शॉप के बाहर लोखंड के टेबल भी पड़े हैं।

सामने पत्थर की सीढ़ियां भी दिख रही है जो पत्थर को ही काट कर बनाया गया है गुफा के अंदर जाने के लिए।

इस इमेज में मुझे हरियाली भरा एक गार्डन दिख रहा है।

जस्ट खिड़की के नीचे एक डब्बा है डब्बे के ऊपर एक छोटा डब्बा भी रखा हुआ है।

इस इमेज में मुझे एक सूखा पहाड़ी इलाका दिख रहा है।

जिसमें बाहर एक सोफा लंबा डाला हुआ है।

जिसमें मुझे डम्बल्स दिख रहे हैं अलग अलग वेट के।

इसमें ढेर सारे पेड़ घास पौधे भी दिख रहे हैं।

सामने एक पिलर भी दिख रहा है एक विंडो खुला हुआ भी दिख रहा है।

उसके ऊपर एक बोर्ड लगा हुआ है इसका नाम सैनिक साइकल मार्ट है।

ये एक झरना है जो पहाड़ी के कई हिस्सों से तेजी से नीचे पानी गिर रहा है।

दूर पहाड़ी भी दिख रहा है खुला आसमान और पहाड़ी के अंदर रास्ता भी पतला दिख रहा हैं।

अगल बगल पत्थर के कुछ और भी छोटे मोटे टुकड़े पड़े हैं और रेड कलर का ग्रिल भी लगा हुआ है।

एक किराने की शॉप है जिसमें पीछे बहोत सारा सामान लटका हुआ है और उसमें एक अंकल खड़े हैं।

और एक बगल में एक और टेबल है एक और चेयर रखा हुआ है एक ट्यूबलाइट लगा हुआ है।

ऊपर लाइटिंग हुई है दो डोर मुझे दिख रहे हैं और एक विंडो दिख रहा है मुझे --